नल पाइप वगैरह कई भी सामान रखे हुए हैं।

लोहे की बड़ी-बड़ी जालियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

बोर्ड पर एक आदमी कुछ लिख रहा है।

इस पिक्चर में एक बड़ीसी मस्जिद बनी हैं मस्जिद के अंदर कुछ मीनार वगैरा बनी हुईं हैं।

जो कि एक पुराने जमाने की मस्जिद बनी हुई नजर आ रही है।

और ऊपर की तरफ बड़े-बड़े बल्फ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां हैं।